और गले में माला भी पहन रखी है और पीछे इनके एक नाग देवता दिखाई दे रहा है।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

और इस पर बोर्ड पर एक लड़का भी टी_शर्ट में दिखाई दे रहा है।

और इस फूल में चार थमले दिए हुए हैं।

और यहां पर बादल भी दिखाई दे रहा है।

और सामने एक कार खड़ी है और कार के पास एक औरत भी दिखाई दे रही है जिसने नीले कपड़े पहने हुए हैं।

और इन छात्र के लिए टेबल भी है।

और यहां पर कुछ शीशे भी लगा हुआ है।

ये एक स्कूल है और इस स्कूल में बहुत सारे विद्यार्थी है।

यहां पर एक फैशन गैलरी दिखाई दे रही है।

और पानी के ऊपर कुछ पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ नीला नीला सा भी दिखाई दे रहा है।